ताजिया काफी सुन्दर जगह बननिये छैएकरा पर फूल माला डाल के और तरह-तरह के पेटिंग क के बणीनिये छै।

इमें ढेर सारा छोट अ बड़ मांछ रखने है सब मांछ एक दोसरा में मिलएले छै देखे में इ पोठिया और गरइल लाग रहल --

त जिम में एक लड़का थाड़ भरके कसरत नइ कर रहल छै और खुद के सेल्फी खींच रहल छै।

की एका-एकी कके सब पाई निकाल तई अपन-अपन जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करतइ।

यही पता नहीं कौन लोग छह मंदिर काफी सुंदर बनो छह जे रंग बेरंग से रंग एसए रंगली गेल छह ।

अबतक काफी सारा आदमी मिलकर एक टा घर बना रहल छै इतर फर्श पे काफी सारा टूटल फाटल ईंट सब बिखरल छे ।

छत ढलाई का काज छल रहल छै छत ढहल छै तकरा ऊपर पता नहीं।

अत्ता जैसे-जैसे कुछ पुतला सब बनल छै जय पे कुछ-कुछ लिखल छै जकड़ा नीचा में--